यह एक ब्लैक कलर की प्लेट में सर्फ है यहां पर रेड चटनी भी नजर आ रही है।

यह डिश खाने में बहोत ही स्वादिष्ट लग रही होगी।

करता हुआ दिखाई दे रहा है और यह तीनों ट्रैक्टर्स पर गेंदे के फूल की मालाएं चढ़ी हुई दिखाई दे रही--

ए_सी पंखे दोनों लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक व्यक्ति लैपटॉप पर बैठा हुआ--

दिखाई दे रहा है यह व्यक्ति चेयर पर बैठा है और एक--

यहाँ पर इस फ्रिज मे अलग अलग तरह के कोल्डड्रिंक्स रखे हुए हैं।

और यहां अंदर की तरफ ऊपर जाती हुई सीढ़ियां है।

यहां पर हमें एक कच्ची जमीन नजर आ रही--

ऊपर की तरफ रेड कलर का बोर्ड लगा है जिस पर--

यह इमेज हमें मार्केट की दिख रही है।

और कुछ सूटकेस भी आ रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इन सूटकेस के कलर अलग अलग हैं जैसे कि--

ढोलक हारमोनियम भी रखा हुआ दिखाई दे रहा--

तनखियां में डोरमैटस रखे हुए नजर आ रहे हैं।

शॉप दिख रही है। जिसके अन्दर अलग-अलग सेक्सन बनाकर रैक बनायी गई है जिस पर अलग-अलग ब्रांड के--

तेज बना हुआ है दोनों तरफ छोटे छोटे केबिनस बनाए गए हैं।

यहां पर हमें एक दुकान दिखाई दे रही है यह एक बाजार में दुकान बनी हुई है जहां पर--

येलो रेड येलो रेड येलो रेड के --

यहां पर हमें एक मशीन दिखाई दे रही है जो की--

इस विंग की दोनों तरफ हमें ऑरेंज कलर के झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर हमें एक घर का कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ या पेंटिंग का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक जिम की ईमेज नजर आ रही है।

दिखाई गई हैं रखी हुईं हैं इस जिम को येलो और ब्लैक कलर के गुब्बारों से सजाया गया है।

यहां पर एक दीवाल पर जिम करते हुए व्यक्ति का कार्टून बना हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ी माता--